एक आदमी खड़ा हो गया है और पास में टावर भी है लाइट के खंबे लगे हुए हैं।

यह एक विद्यालय है और इसमें चार गेट लगे हुए हैं। लोहे के गेट लगे हुए हैं और इसमें ग्रिल लोहे की लगी हुई है।

यह एक फल फ्रूट की दुकान है जिस पर एक बड़ा गेट लगा हुआ लकड़ी का और इसके पास में एक आदमी खड़ा हुया है।

और कुछ पत्तागोभी रखी हुई हैं और केले रखे हुए हैं और लोहे का कांटा रखा हुआ है और एक कुर्सी भी है।

सुरंग के बाहर कुछ पत्थर रखे हुए मोटे मोटे और कुछ बाहर घास भी जमी हुई है और बराबर में कचरा पड़ा हुआ है।

यह एक स्टेज है और इस पे हरे कलर की चादर बिछी है जिस पर छह लड़की खड़ी हुई है और आठ लड़की बैठी हुई है।

और उसके अंदर को कोई सिल्क जैसी चीजें रखी हुई हैं।

और इसमें झीना लगाया गया है और कुछ ग्रिल लगी है लोहे की।